और यहां बिल्डिंग एक गोला कार में बनाया गया है।

नदी में पानी में कुछ लोग अगरबत्ती लेकर खड़े हैं।

जिस पर सैमसंग गैलेक्सी को लिखा गया है।

यहां पर एक गेट है गेट के अंदर एक पेड़ है और उसके पीछे एक लाइट लगी हुई है।

कार की आगे का हिस्सा को निकाल दिया गया है।

इसके नीचे कुछ सामान रखे गए हैं।

बीच में एक सोफा रखा गया है और उसके आगे टेबल पर एक फ्लावर्स रखे गए हैं और टेबल पर क्यू_आर कोड र --

उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

और बीच में बाल्टी और मेज रखे गए है।

हैं और इनके दीवारों पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगाई गई है।

इसके बगल में बहुत सारे वायर निकल रहे हैं।

जिसमें हम देख सकते हैं कि बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और ग्राउंड में कई सारे गमले रखे गए हैं।

और इसके पीछे एक लकड़ी का सोफा रखा गया है।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ फोन चला रहा है।